लाइटें हैं मशीन हैं।

दो चेयर है पौडर है आईना है झूमर लाइट है ।

पानी बोतल है बैग है सेनिटाइज़र है।